ये पूरा का पूरा सीमेंट से बना हुआ है और ये व्हाइट कलर का है।

शो पूरा का पूरा वाइट कलर का टाइल्स से बना हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में बहुत बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है जो कि पूरा पूरा सीमेंट से बना हुआ है और वह भी व्हाइट कलर का और शायद से एक चर्च है।

खिड़की पूरा का पूरा शिशा से बना हुआ है।

अब मुझे सिढ़ी भी दिखाई दे रहा है।

पे बहोत सारा सामान रखा गया है।

और मुझे एक आदमी दिखाइ दे रहा है जिसका चेहरा भी क्लियर नहीं है।

यहां पे मुझे बहुत बड़ा बड़ा पेड़ भी दिख रहा है।

और यहां पर बहोत सा गाड़ी भी है।

यहां पर खिड़की भी जो कि पूरा का पूरा शीशा से बना हुआ है।

जब मुझे पेड़ भी दिखाई दे रहा है जो की ऑरेंज कलर का है।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

उनमे बहोत सारा घर है और बहोत बड़ा बड़ा पेड़ भी है।

उसके पीछे मुझे एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है जोकि व्हाइट कलर का है।

यहां पर बहुत बड़ा बड़ा पेड़ भी है।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

मुझे इस तस्वीर में बहोत बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है जो कि पूरा का पूरा टाईल्स और सीमेंट से बना हुआ है।

ऊपर का खिड़की पूरा शीशा से बना हुआ है उसपे कर्टेंस लगाया गया है यहा पर लाईटस भी है।

यहा पे कुछ लोग भी हैं जिनका चेहरा भी क्लियर नहीं है।

और यहां पर मुझे एक बेंच भी दिखाई दे रहा है जो कि पूरा पूरा लकड़ी से बना हुआ है।

यहां पर बहुत बड़ा बड़ा पेड़ भी है।

यहां पर एक सोफा भी है जोकि ब्लू कलर का है ये पूरा का पूरा प्लास्टिक और लोहा से बना हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसका चेहरा भी क्लियर नहीं है।

यहां पर मुझे एक स्टैचू दिख रहा है जो की पूरा पुरा सीमेंट से बना हुआ है।

छत भी टीना है जो कि ब्लू कलर का है।

इसपर वोडाफोन जो कि और बहुत कुछ लिखा हुआ है। दूर में बहुत बड़ा पहाड़ भी है।

दीवार आरेंज कलर का है।

यहां पर लाइट्स भी है जोकी जल रहा है।

यहां पर मुझे फेंसीन भी दिखे रहा है जो की पूरा का पूरा सीमेंट से बना हुआ है।